मैदान के चारों तरफ हरे पेड़ लगे है। मैदान में एक साइकिल भी खड़ी है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग का कलर व्हाइट है। बिल्डिंग के ऊपर गुम्मद बना है। गुम्मद में डिज़ाइन बनी है।

सामने एक घर दिख रहा है। घर में बहोत सारे दरवाजे लगे हैं।

चेयर का कलर कत्थई है।